बड़े बड़े ढोल भी बजाते दिखाई दे रहे हैं कुछ लड़कियां भी बजा रही हैं यहाँ पर काफी सारा भीड़ इककट्ठा भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग आते जाते नजर आ रहे है सफ़ेद सफ़ेद आसमान नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ बड़े-बड़े पौधे तो कुछ छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर--

आसपास काफी सारे मकान बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे गमले नजर आ रही हैं आसपास कुछ छोटे-छोटे पत्थर भी दिखाई--

यहाँ पर एक बहुत बड़ी मल्टी बनी हुई हैं इस मल्टी को काफी सारे मिलाकियों से सजाया गया हैंजो कुछ हरी हैं तो कुछ गुलाबी हैं।